दो लोग ऊपर तीन लोग नीचे हैं और सामने भी एक बिल्डिंग बन रही है और सामने बहुत सारी हैं।